बहुत भीड़ हैं यहाँ से थोड़ा ----

ये एक जिम है यहां बॉडी सोडी बनाने आते है बहोत-सी बॉडी लड़के सब बनाते है।

कंपनी है यहाँ पर सब भी आते है ।

यहाँ फैक्ट्री है दो लम्बे यहाँ पर सब --

पब्लिक स्कूल है यहाँ पर सब बच्चे --

उन्नीस सौ छप्पन में लगा दिया आश्रम में यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं ।

यहाँ पर सब कुछ की व्यवस्था है तो पीने योग्य यहाँ पर दो तीन आदमी है दो तीन --

एक सर है बता रहे है बहुत सुंदर है बहुत अच्छी है ।